एक ग्रीन एक नीले कलर का हरे कलर का एक बहोत बड़ा पहाड़ सा बना हुआ है जिसमें सर्किट छोटी-छोटी सर्किट से बलपो की लाइटिंग की गई है और यहां पर एक औरत खड़ी हुई है एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

रानी लक्ष्मी बाई के लुक में यह छोटी बच्चियां अपना प्रोग्राम पेश कर रही हैं।

इस फोटो में नजर आ रहा है छोटे-छोटे बच्चे अपनी पेंटिंग बना रहे है एक मेडम उनके पीछे खड़ी हुई है।

कुछ लोग स्टेज पर खड़े होकर कुछ गा रहें हैं। नीचे बैठे लोग उनको देख रहें हैं।

और सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं स्कूल के बच्चे अपनी पेपर से कुछ बना रहे हैं ।

और उसके पीछे एक लड़का और खड़ा हुआ है। एक्सरसाइज करता हुआ लड़का ब्लैक कलर का उम्म लोअर पहन रखा है और अपनी मशीन को नीचे की तरफ खींच रहा है।

इस फोटो में तीन बच्चियाँ नजर आ रही है तीन छोटी-छोटी लड़कियां है जो डांस का स्टेप करती हुई दिख रही है।

इस फोटो में छत बनने का काम चल रहा है लोहे की छड़ों की बिछावट हो चुकी है। मज़दूर अपने सिर पर अ सीमेंट का माल लिए हुए ऊपर की तरफ आ रहा है और --

इस फोटो में अनारदाना चलता हुआ नजर आ रहा है पास में एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने अनारदाने को चलते हुए देख रहा है।

सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है ये सभी अनारदाने को देख रहे हैं खड़े हो --

ये फोटो किसी फैक्ट्री का जैसे लग रहा है और मजदूर इसमें काम कर रहें हैं एक आदमी खंभे या मशीन के पास में खड़ा हुआ है एक आदमी अपने काम पर लगा हुआ है।